यहाँ पे बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है शायद वो वर्कर है जो कि--

और ऊपर में जो है बादल छाया हुआ है पूरा--